मोरे ओन ग्रेप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे कुछ अधिक ग्रेप ग्रेप कमांड्स कुछ उदाहरणों के द्वारा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
पूर्व आवश्यकताओं में आपको लिनक्स टर्मिनल के मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए
आपको ग्रेप से परिचित होना चाहिए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
फिर हमें हाइफन ई विकल्प उपयोग करना है
मैं वही फाइल grepdemoटीएक्सटी उपयोग करूँगी
माना हम उनके लिए जानकारी ढूँढना चाहते हैं जो या तो सिविल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं
टर्मिनल पर टाइप करें ग्रेप स्पेस हाइफेन ई स्पेस डबल कोट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कोट्स के बाद स्पेस हाइफेन ई स्पेस डबल कोट्स में सिविल कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है माना कि आपको चौधरी चौधरी शीर्षक वाले लोगों को ढूँढने की ज़रुरत है
समस्या यह है कि अलग अलग लोग अपने शीर्षक को अलग अलग तरीकों से लिखते हैं
अतः इसका उपाय क्या है160
इन स्थितियों में हम हाइफन ई के साथ हाइफन आई विकल्प प्रयोग कर सकते हैं
टाइप करें ग्रेप स्पेस हाइफेन ईई स्पेस डबल कोट्स में चौधुर्य कोट्स के बाद स्पेस हाइफेन ईई स्पेस डबल कोट्स में चौधरी कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
लेकिन कुछ अन्य तरीके हो सकते हैं जिसमें हम नाम लिख सकते हैं
हम कितने हाइफन ई विकल्प दे सकते हैं
स्पष्टतः एक बेहतर तरीके की ज़रुरत है और वह तरीका रेग्युलर एक्सप्रेशन यानि नियमित व्यंजक का है
रेग्युलर एक्सप्रेशन टेक्स्ट की स्ट्रिंग के मिलान के लिए एक संक्षिप्त और स्थिति के अनुरूप ढालने का माध्यम देता है
जैसे कि विशिष्ट कैरेक्टर शब्द या कैरेक्टर्स के पैटर्न
बहुत से रेग्युलर एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स होते हैं
हम इन्हें एक एक करके देखते हैं
कैरेक्टर क्लास यह कैरेक्टर्स के समूह को स्क्वायर ब्रैकेट्स की जोड़ी में उल्लिखित करने की अनुमति देता है
कैरेक्टर्स के इस समूह में से केवल एक ही मेल खाता है
उदाहरण abc का मतलब होगा कि यह रेग्युलर एक्सप्रेशन या तो आ या ब या सी से मेल खाता है
चौधुर्य को मिलान करने के लिए हम प्रॉम्प्ट पर टाइप कर सकते हैं ग्रेप स्पेस हाइफेन आई स्पेस डबल कोट्स में च स्क्वायर ब्रैकेट खोलें एओ स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें उव स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें ध स्क्वायर ब्रैकेट खोलें यूए स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें र स्क्वायर ब्रैकेट खोलें यी स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें डबल कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
यह अभी भी चौधुरी में डबल ई के साथ मेल नहीं खाता
अगर हमें एक बड़ी रेंज को उल्लिखित करना है तो टाइप करें रेंज का पहला अक्षर डैश आखिरी अक्षर माना हमें किसी डिजिट का मिलान करना है तो हम केवल 0 9 लिखते हैं
कैरेक्टर्स के इस समूह से एक का मिलान किया जाता है
ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क ठीक एक पहले वाले कैरेक्टर के 0 या अधिक बार होने को दर्शाता है
उदाहरण के लिए एबी ऐस्टरिस्क aabअब्ब और अब्ब से मेल हो सकता है
अतः उन छात्राओं के नाम का मिलान करने के लिए जिनका नाम मीरा है प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ग्रेप स्पेस हाइफेन आई स्पेस डबल कोट्स में एम स्क्वायर ब्रैकेट खोलें ईआई स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें ऐस्टरिस्क र आ आ ऐस्टरिस्क कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
डॉट रेग्युलर एक्सप्रेशन किसी एक कैरेक्टर का मिलान करता है
माना हम ऐसे शब्द ढूँढते हैं जिनमें चार अक्षर होते हैं और जो एम से शुरू होते हैं
हम सिर्फ टाइप करेंगे ग्रेप स्पेस डबल कोट्स में Mडॉट डॉट डॉट स्पेस कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
यहाँ कोट्स में स्पेस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 5 या अधिक अक्षरों के शब्दों का मिलान करेगा
लाइन में हमारा पैटर्न कहाँ है यह ढूँढने पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं
यह लाइन की शुरुआत में हो सकता है
उसके लिए हमारे पास कैरेट साइन है
अब यदि हम उन प्रविष्टियों को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका रोल नंबर आ से शुरू होता है
हम जानते हैं कि फाइल में रोल नंबर पहला क्षेत्र है
प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ग्रेप डबल कोट्स में कैरेट साइन आ कोट्स के बाद grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
उसी प्रकार फाइल के अंत में पैटर्न के मिलान के लिए हमारे पास डॉलर साइन है
7000 से 8999 के बीच छात्रवृत्ति ढूँढने के लिए हमें लिखना है ग्रेप स्पेस डबल कोट्स में स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 78 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें डॉलर साइन कोट्स के बाद स्पेस grepdemoटीएक्सटी एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है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
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एक से अधिक पैटर्न का मिलान करना अलग अलग स्पेलिंग वाले शब्दों को जांचना कैरेक्टर क्लास ऐस्टरिस्क का उपयोग डॉट प्रयोग करके किसी एक कैरेक्टर का मिलान करना फाइल की शुरुआत में एक पैटर्न का मिलान करना फाइल के अंत में एक पैटर्न का मिलान करना
नियत कार्य में5 अक्षर वाली और य से शुरू होने वाली प्रविष्टियों की सूची बनायें
नीचे दिए लिंक पर उपलब्ध विडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकरी निम्न लिंक पर उपलब्ध हैhttpspoken tutorialorgNMEICT Intro आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद